यहाँ पर मुझे ट्रैन का पूल दिखाई दे रहा है और ट्रैन के पूल के नीचे पानी भरा हुआ हैं।

और हरी-भरी झाड़ियाँ दिखाई दे रही है आसमान नीले कलर का दिखाई दे रहा है।

और लाल कलर के राइट | साइड से दोनों रस्सियाँ बंधी हुई है ऊपर का टेंट भी गुलाबी और सफ़ेद कलर का दिखाई यह रात का टाइम है।

वेलकम गेट फूलो से सजे हुए है और खाने की डिशे लगी हुई हैं ।

यहाँ पर मुझे बहुत सारे गमले दिखाई दे रहे है गमले में बहुत सारे पौधे लगे हुए है और पौधों में रंग-बिरंगे गुलाब और काफी सारे फूल खिले हुए हैं ।

यहाँ पर मुझे एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के ऊपर दो भैंस ह दिखाई दे रही है और दो व्यक्ति दिखाई दे रहे है उधर बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पत्थरो के कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं अ--

यहाँ पर मकान बनाने का काम चल रहा है ईंट की छोटी-छोटी दीवारें उठायी गयी है और सरिये से बीच में जाली बनायीं गयी है और कुछ खड़े जलिये ख छरिये से जाली बनायीं है।

यहाँ पर मकान बनाने का काम चल रहा है मकान बनाने के काम में नीचे से कॉलम उठाये गए हैं ।

झाड़िया बन दिखाई दे रही है और हरी हरी कुछ छोटी छोटी झाड़िया दिखाई दे रही है प--

और बड़े-बड़े व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद है और बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे बिल्डिंग दिखायी दे रही है।